दिखाई दे रहा प्राचीन मंदिर दिखाई दे रहे है इसमें कुछ शिवलिंग बनी हुई दिखाई दे बैटरी दिखाई दे रही है कुछ भी लोग श्रद्धालु आएंगे पूजा करने आएंगे ईहा मुझे ए मुझे एक इहा चारों और पेड़ पौधे नजर आ रहे हे केले कि पेड़ पौधे दिखाई दे रहें हैं मुझे--

रास्ता दिखाई दे रहा रास्ता में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और यहां मुझे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं चारों और यहां पर कुछ आ कुछ लॉन्ग कुछ घर बने हुए दिखाएं--

मेला दिखाई दे रहा-- मेला में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और यह मुझ पर वीडियो दिखाई दे रही है और बहुत सारी दुकान दिखाई दे रही है सामान लेते हुए ले-ते हुए नजर आ रहे हैं कुछ व्यक्ति और यहां पर आप मुझे झूला दिखाई दे रहे-- झूले में झूले झूला झूलते हुए नजर आ रहे हैं बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

दिखाई दे रहा मेले में बहुत सारे लोग दिखाइ दे रहे बहुत बड़े बड़े झूले दिखाई दे रहे चारों ओर अ लाइट लगी हुई दिखाई दे रही मेले में बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही है और दूर दूर तक मुझे नजर आ रहा है बहुत सारे लोग --